विशाल देखने में लगता है अभी लाईट गया है और ये अरे तेरी की ये तो बहुत जल्दी आ रहा है और रुक रहा है मेरो को लगता है अच्छा जंगल भी है।

और सुंदर भी दिख रहा है पीछे बन के जैसे नजर आ रहा है। कितनी झाडियाँ सब है कितनी कुछ है।

ऐसे ही होना चाहिए और हर किसी को ऐसे ही भगवान का पूजा करना चाहिए। हमें बहुत--

इतने सुंदर-सुंदर फूलों से सजाया है। देखने में इतना अच्छा लगता है। इसमे जो दूल्हा बेठेगा उसको कितना अच्छा लगेगा । बहुत सुंदर है तारीफ के लायक।

साथ में पार्क - सा भी बना हुआ है। लाइटिंग भी है दो खंभे भी है और पानी इतना सुंदर-सा है।

यहो यह तो बच्चे का खेलने का है जिसमे चड़के बहुत अच्छी तरीके से बच्चे खेलते हैं। और साथ मे एक पैड़ - बूटे भी बहुत सुंदर-सुंदर लग रहे हैं।

यह तो मुझे एक हवाई अड्डा दिख रहा है और एक कितने सारे आदमी पीछे नज़र आ रहे हैं। एक अपने बच्चे को उठा के लेके आ रहा है और यह लाइट वाला खंभा भी लगा हुआ है।

एक चटाई रखा है एक भाई साहब उधर खड़े हैं दो एक उधर खड़े हैं।

ये टमाटर का बोरा है जो बहुत सुंदर दिख रहा है। इसमें टमाटर बहुत बढ़िया लगते हैं लाल-लाल लगते हैं टमाटर और इसमें किया कहते हैं भाईसाहब लगता है इसमें दवाई डाल रहे हैं।

जिसमे दो महिलाओ की फोटो लगा हुआ है। यह मोल में लोग बहुत आते होंगे।